जा रहा है। इत्ते आदमी बैठे हुए हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पेड़-पोधा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारा दवाइयाँ रखा गया है। टैबलेट भी है सिरप भी है सुई भी है पानी भी है।